यहाँ पर बहोत सारी मिट्टी दिखाई दे रही है कुछ गड्डे दिखाई दे रहे --

सफ़ेद लाइन दिखाई दे रही है।

लोहे की सीपियाँ दिखाई दे रही है।

आधा ष और टी.ओ. लिखा हुआ है

लिखा हुआ दिखाई दे रहा है एक छाता लगा हुआ दिखाई दे रहा है एक बाइक दिखाई दे रही है एक आदमी दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर ऑरेंज ग्रीन और वाइ वाइट कलर के बलून दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर एक ऑटो दिखाई दे रही है जो सफेद रंग की है।

पीछे टाइल्स दिखाई दे रही है एक द खम्भे पे एक बोर्ड टांगा दिखाई दे रहा है।

एक स्टूल दिखाई दे रहा है।

एक पत्तों से सजी हुई माला दुकान पे दिखाई दे रही है सामने फ्रिज दिखाई दे रहा है।

एक साइकिल दिखाई दे रही है जो नीले रंग की है।